यहाँ पर एक कालोनी दिखाई दे रही है। छोटी सी सिटी है जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं। कुछ व्हाइट कलर की बिल्डिंगे कुछ बिल्डिंगो पर येलो कलर दिखाई दे रहा है।

पास में एक मैदान बना हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है एक हरा भरा पेड़ भी दिख रहा है।

स्काई कलर है और लड़के रंग बिरंगे ड्रेस पहने हुए हैं पिंक कलर रेड कलर ब्लू कलर और ब्लैक कलर और ऊपर गुब्बारे लगे हुए हैं ।

यहाँ पर एक प्लेट में दाल चावल दिखाई दे रहें हैं। एक मेज पर एक प्लेट है। जो व्हाइट कलर की है।

यहाँ पर एक रेड कलर का बहुत सुंदर फूल है।

जिसमें सफेद कलर की किनारी दिखई दे रही है। एक छोटा सा --